पंखा चल रहा है एक कुर्सी लगाई हुई है कुर्सी रेड कलर का है।

काउंटर जैसा बनाया हुआ है काउंटर के अंदर बहुत सारे सामान रखे हुए हैं।

अंदर काउंटर बनाया हुआ है काउंटर पर एक प्रिंट आउट करने का मशीन रखा हुआ है।

यहां पर नदी का दृश्य देख रहा है।

बगल में कई सारा लगाया हुआ है पत्थर पत्थर के बीचोंबीच से पानी बह रहा है।

एक लड़का है जो बैठा हुआ है और उसे बना रहा है उसका नट खोल रहा है पेचकस से।

पीछे बाथरूम है बाथरूम के पीछे एक तौलिया टांगा हुआ है।

रोड पर एक कार जा रही है कार व्हाइट कलर का है।

उसपे बहुत सारे लोग बैठे हुए है कपड़े दिख रहा है।

अंदर स्विच लगाया हुआ है बहुत सारा।

ब्लैक कलर का है गेट लगाया हुआ है गेट ग्रीन कलर का है।

पंखा लगाया हुआ है नीचे का जमीन पूरा व्हाइट कलर का है ऊपर का पिला--

कई सारा लाइट जल रहा है लाइट व्हाइट कलर का है।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

बहुत सारे कॉपी किताब रखे हुए हैं काउंटर पर।

एक आदमी बैठा हुआ है चेयर पर सामने क्यू आर कोड चिपकाया हुआ है दीवाल पर।

बगल में पेड़ पौधे लगाए हुए हैं छोटा छोटा गमला है ऊपर सीढी लगाया हुआ है।

उसके पीछे डाला खाली है और गाड़ी वाइट कलर की है चक्का लगाया हुआ है चक्का ब्लैक कलर की है।

यहां पर एक रेस्टोरेंट का दृश्य दिख रहा है।

एक टेबल लगाया हुआ है टेबल पे दो गिलास रखा हुआ है स्टील का।

मोर का आगे वाला पार्ट पूरा ब्लू कलर का है पीछे पंख मोर का ग्रीन कलर का है और वह जमीन पे चल रही है।

बच्चे लोग एक जैसा ड्रेस पहने हैं व्हाइट कलर का।

बीच में एक आदमी खड़ा है जिसके हाथ में कुछ सामान रखी हुई है।

यहां पर स्कूल का दृश्य दिख रहा है यहां पर साइंस एग्जीबिशन का दृश्य दिख रहा है।

बादल का दृश्य देख रहा है पेड़ पौधे का दृश्य देख रहा है और अगल बगल भी पेड़ पौधे लगाए--